इस गमले के बूटे की पत्तियां हरी भरी हैं।

रूम में काफी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़े है।

इसमें पियानो गिटार हैं।

इसके बाहर एक बुलेट के पास--

तेज के ऊपर खड़े हैं।

पीछे ए_सी भी लगा हुआ है।

काफी पेड़ लगे हुए हैं।

ये स्टेट बैंक एटीएम का है।

खेत में सोलर लगा हुआ हैं।

ये ग्लोबल की कंपनी है।

आदि की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी--